यहाँ पे एक कार रखी हुई है कार के पास एक टैंकर रखा हुआ है टैंकर पास दीवाल है।

यहाँ पे दो कार खड़ी हुई है कारों के पीछे एक मकान है एक कार का गेट खुला हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान के उपर एक होर्डिंग लगा हुआ है दुकान में फुल मालाए लगी हुई हैं।

इस पे कुछ लड़कों की तस्वीरें है दुकान में एक डमी रखी हुई है दुकान में एक काॅंच का गेट --

कुछ बाउल्स रखे हुए हैगुलदस्ते लगे हुए है आस-पास बांस के डिजाईन है उपर लाइट लगी हुई है।